जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हम यहां होटल रूम पे पहोंच गए हैं और यहां गुब्बारे भी बहोत अच्छे रंगों में लगे हुए हैं।

एक स्टेशन पे है जहां हमको पटरियां और बोहोत सारे लोग बैठे दिख रहे हैं।

और कुछ लाइटें भी दिख रही हैं और एक घर भी है बहोत अच्छा लग रहा --

जैसे कि आप लोग यहां देख सकते हैं यहां सामने कुर्सियां है बहोत सारी हैं।

जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहां एक हॉस्पिटल है। बहोत ही बड़ा है और यहां पे बहोत ही मरीज आए होंगे।

जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ होस्टल टाइप का है बहोत हि बड़ा है।

और बहुत लोग खाना भी खा रहे हैं बहुत लोग परोस भी रहे हैं।

फ्लावर सी भी लगे हुए हैं गुब्बारे भी फूले हुए हैं।

जैसे कि आप लोग देख रखते हैं हम पहोच चुके हैं एक ढाबे पे मतलब जैसे ढाबे पर आए हैं और यहाँ पे बहोत सारे गोदरेज रखे हुए हैं।

तो यहां पुजारी है जो वो पूजा करने जा रहे हैं।

यहां की सजावटें भी बहुत अच्छी है लाइट भी बहुत ही अच्छे लगे हैं और कुछ लोग बैठे हुए हैं डिसीजन कर रहे हैं।

यहां राउंड जैसे है और त बहोत सारी कुर्सियां और टेबल भी है।